जहां दो आदमी खड़े हुए है।

यहां पे कुछ बैट लगे हुए हैं।

कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन रखे गए हैं।

और तकियों में काले और नीले रंग का कवर चढ़ाया गया है कम दीवाल पे एक पेंटिंग लगी हुई है।

कुछ ने साड़ी पहनी हैं कुछ नहीं सूट पहने हैं।

एक आदमी बैग लेके ब्रांच के अंदर जा रहा है।

एक आदमी मैन दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है।

तोतो को खाने खाने के लिए दो गुलाबी रंग के डब्बे रखे गए हैं।

नीचे उनके बैठने के लिए झूला बनाया गया है।

फौजी की ड्रेस में है उनके हाथ में झंडा है।

तथा कुछ नमकीन मिठाइयां जिसमें मठरी भुने हुए चने इत्यादि शामिल है।

यहां पे बच्चों के लिए नेट लगाया गया है।